पीछे पेड़ भी है और आगे टेबल भी लगा हुआ है।

और यह भवन काफी सुंदर है जहां काफी दरवाजे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में जो दृश्य दिख रहा है वह चर्च का है।